रूम के साइड में बाहर हमें एक ग्रीन कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

रोड के उस पार हमें बहुत बड़े से सुन्दर से हरे भरे पौधे दिखाई दे रहें हैं।

यहां हमें एक बहोत बड़ा जो है रोड दिखाइ दे रहा है। रोड के दोनों साइड्स हमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

अंदर कुछ रेक्स में हमें दवाइयां या बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं सामने एक टेबल है जो ब्लैक कलर का है उस ट्के जस्ट सामने पानी की केन रखी हुई है।

यह हमें काफी सुन्दर सा एक घर दिखाई दे रहा हैं | ये घर वाइट कलर से पेंट है। घर में बहुत सारे पिल्लर्स है। घर के सामने एक छोटा सा गार्डन है जिसमे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।